ले घास सब हई पत्ता हई गाछी सब हई।

ता हई कागज के बनवे छई।

दो गो लड़का एपे बइठल हई इ कागज के कुछो बनावे छय।